इस फोटो में मुझे कुछ कलाकारीया नजर आ रही है और बीच में एक रिंग लाइट भी रखी हुई है बहुत ही सुंदर सा ये जगह--

बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ों में पहाड़ी इलाका है और एक छोटा सा--

और शायद सेब के थोड़े से बगीचे भी है और कुछ लोग भी ऐसे ही चले हुए--

जिसमें की बहोत सी मिठाईयाँ रखी है और कुछ बॉटल्स भी हैं।

बहुत बड़ी शॉप लग रही है और बहुत ही--

इनक्रेडिबल थ्रेड्स कर के कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

एंड ज्वेलरीज भी मुझे दिख रही है जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होगी।

और दो कॉफी के कप्स यहां पर दिख रहे हैं और कुछ लोग--

और चार स्विचीज और चार बोर्ड्स मुझे यहां पर।

एडवेंचर्स नजारा दिख रहा है इसमें की जंगलक जंगल के बीच--